यहाँ पे एक एयरोप्लेन दिखाई दे रही है वाइट कलर की ब्लैक कलर से टू टू सेवेन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

कालेज दिखाई दे रहे हैं गोल्डन कलर --

हरी घास दिखाई दे रही है सुखी घास दिखाई दे रही है।

मशीनस दिखाई दे रहीं हैं डम्बल दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक स्टेज दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर के दिखाई दे रहा है और इसमें पिंक और व्हाइट येलो रेड कलर के --